जैसा कि मैं देख पा रही हूँ दिन का वक्त है और यहाँ एक रास्‍ता गया है रास्‍ते के करीब एक आदमी खड़ा है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ दिन का वक्त है और यहाँ सारे लोग खड़े हैं एक आदमी यहाँ --

जमीन पे जो कारपेट बिछी हुई है वो रेड कलर की है दो बड़े-बड़े छाता दिख रहा है एक बड़ा-सा पंखा दिख रहा है और लोग खड़े है यहां पे कुछ औरतें --

पंडाल का कलर है येल्लो और पिंक ।

उसके आगे एक बैंक है बैंक के का नाम है पंजाब नेशनल बैंक उसके जस्‍ट बगल में एक दुकान है लवली कलेक्‍शन‍ लिखा हुआ है एक सीढ़ी --

इस तरफ जाके आगे जाके एक पोल हैं पोल के ऊपर एक दिवार हैं।

दुल्हे का नाम लिखा हुआ है अमित एंड दुलहन का नाम लिखा हुआ है अंजलि अब यहाँ बहोत सब खुबसूरत सा डेकोरेट किया गया है फूलों से और रंग-बिरंगे फूल लगाया गए हैं।

यहाँ एक टीवी नजर आ रही हैं एक डस्टबिन हैं दो बैग नजर आ रहे हैं एक --

टेबल नजर आ रहा है चादर का कलर भी पूरा व्हाइट है उसपे एक ब्लैंकेट रखा हुआ है वो येलो कलर का है औ --

उम टीवी के जस्ट बगल में एक वाइट कलर का बोर्ड नजर आ रहा हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक म मजार के तस्वीर है एक लड़का खड़ा है फुल --

एक मिट्टी कलर का जींस पहना हुआ है यहां एक दुल्हन के बैठने के जैसे सौ सौफे लगे हैं सोफा का कलर है व्हाइट और पिंक यह फ्लावर --

ये फ्लावर से डिजाइन किया गया है डेकोरेशन में का कलर है पिंक रेड ग्रीन ।

जब वाल का कलर है लाइट ग्रीन कलर का इसमे दो तीन खिड़कियां दिखाई दे रही हैं एक बोर्ड --